यह एक तीन फ्लोर का घर है। घर लेकिन सबसे नीचे में शटर लगा हुआ है दो एक शटर पर --

और दो डस्टबिन दिख रहा है डस्टबिन का डिब्बा आकाश नीले रंग का दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग --

तस्वीर मे बहुत सारे नरकट दिखाई दे रहे हैं और पानी दिख रहा है। पानी भी एक बगुला दिख रहा है।

और पानी में अ आसमान की आसमान की परछाई दिख रही --

ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है। पीछे जंगल भी दिख रहा है। जंगल का कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है।

दुकान लग रही है जो कि बहौत सारे बुक रखे गए हैं खाने अलमारी में और एक टेबल दिख रहा है।

और एक सीढ़ी दिख रही है लोहे की। एक आदमी दिख रहा है सफेद कलर का टी-शर्ट पहने हुए। ब्लैक कलर का --

और एक आदमी खड़ा है। दोनों ने लूंगी लगाए है। एक ने टी-शर्ट पहना है एक ने शर्ट पहना है। बहुत सारी शैंपू दिख रही हैं और सामने --

और आसमान दिखाई दे रहा है। बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बगल में गार्डन दिखाई दे रहा है।

और कार और सामने फरहत का धुलाई का सेंटर है।

और एक एंटीना दिख रहा है। लाइट की परछाई दिख रही है। बहोत सारे गमले दिख रहे हैं चारपांच ठे।

दरवाजा नहीं लगा है और एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है। नीले रंग का टी-शर्ट पहनकर और पीले रंग की टोपी लगाकर।

और एक कंबल है लाल कलर का और ब बेड के ऊपर एक बैग दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

इस चित्र में एक ब्रिज दिखाई दे रहा है और ब्रिज के नीचे से पाई पानी --

आलू जो है वो टोकरी में रखा गया है। टॉ टोकरी का कलर चॉकलेटी रंग का है।

एक कप में एक चम्मच है एक कप में नहीं है और --

और एक आदमी दिख रहा है सर्ट पैंट पहने हुए।

पांच ठे लड़के बैठे हुए हैं और एक तरफ एक लड़की बैठी हुई है और कॉलेज से एक लड़का --

फोटो में एक बैंक दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है फेडरियल बैंक ए.टी.एम. । कांच का दरवाजा दिख रहा है शटर दिख रहा है नीले रंग का।

ये जो चित्र है इसमें बहोत सारे खल बट्टे दिखाई दे रहे हैं जो कि सब मेज पर रखे --

और दूसरे पर तीन खलबट्टा है तीसरी लाइन पर चार खलबट्टा है और चौथे पर पांच है पांचवें पर छह है।

जो कि सब सिल्वर रंग के हैं और उसके पीछे बहुत सारे खलबट्टे दिखाई दे रहे हैं पीछे पीले रंग का दीवाल है और सारे मेज पर रखे --

और द दो तीन बहुत सारी लाइटें जल रही हैं करपट्टी दिख रही है एक महिला दिख रही है पीले रंग की साड़ी पहनी हुए।

सामने केला है ब्लर कर दिया गया है।

ये एक बेडमिंटल अकेडमी है जो कि नीले रंग का है और जो नीचे फर्श है वह ग्रीन रंग का है।

और सारे बत्तख पत्थर के लग रहे हैं और ल लाइट दिख रही है।